ये एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की दुकान लग रही है।

तरह कि पड़ी हुई है और अलग अलग मशीनें है और अंदर एक चेयर पड़ी --

और ये बात ऊपर हिंदी में भी लिख र--

और यहां है उसके अंदर भी कुछ लोग खड़े हैं और कुछ लोग बाहर खड़े हैं।

एक लड़की ने रेड टी शर्ट ब्लैक पैंट पहनी है और दूसरी लड़की ने ग्रीन येलो कलर की टी शर्ट और ब्लैक कलर की पेंट पहनी --

ये एक बहुत बड़ा पेड़ है यहां इसके ऊपर बहुत पत्तियां लग रखी हैं।

ये एक ज्वेलर की शॉप लग रही है।

और ये बहोत सारे खनों में रख रखे हैं डब्बे भी हैं और ये बहोत अच्छी शॉप लग रही है मुझे तो --

काउंटर है और अलग अलग डोर्स में अलग अलग चीजें पड़ी हुई हैं और बहुत बड़ी दुकान है।

खड्डे के अंदर दो आदमी के हाथ में वो उसे देख रहे है और ये बहुत बढ़िया लग रहा --

इधर ये बहोत सारी जीम्स के प्राइस पड़े हैं और जिम की फर्स्ट एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन इधर हो रहा है।

क्रिकेट के समान पड़े हैं जैसे की अलग अलग तरीके बैट पड़े हैं और पैरों पर पहनने वाले वाइट कलर के पड़े हैं।

अलग अलग बोरियों में बहुत सारे कालू पड़े हैं आलू पड़े हैं प्याज है और बहुत सारे --

ये एक बहोत खुली रोड है यहां पर सामने की तरफ बहुत पुराना एक गंगा थियेटर है।

कोइयों के हाथ में बैट हैं कोई बैटिंग कर रहा है उधर बोहोत सारे बच्चे खड़े हैं इन्होने अलग अलग तरह के कपड़े पहने हुए --

और उनके पास एक स्कूटी भी खड़ी है।

इधर एक कार टैक्सी और बहुत सारी टू व्हीलर्स खड़ी है और पास में अशोक नाम की एक जनरल शॉप है।